ए ये दृश्य भीड़-भाड़ वाला लग रहा है ऐसा लग रहा है यहां पे कोई अ कुछ फेस्टिवल या फिर कुछ किया जा रहा है यहां से बहुत सारे लोग इसके चारो तरफ हरा-भरा हरियाली जैसा है।

ये सब काफी अच्छा लग रहा है पीछे लग रहा है पानी जैसा गड्ढे टाइप का है।

इसके चारो तरफ अ लुब्रान से आकर अ खड़े होकर देख सकते हैं पीछे गार्डन टाइप का यहां पे एक लेडीज़ खड़ी हैं उ एक बच्चा भी है जो ये झरना को देख रहा है।

ये किसी धार्मिक स्थल का दृश्य है जहाँ पे चारो तरफ अलग अलग तरह के मंदिर दिखाई दे रहे हैं | बीच में एक बड़ा सा तालाब टाइप का पोखरा टाइप का दिखा है | जो--